और लेफ्ट में एक औरत खड़ी हुई है जो फ़िरोज़ा कलर कपड़े पहने हुए है और पीछे डेकोरेशन हुआ है और पिलर भी है।

और वो प्रोग्राम की तैयारी कर रही है मे बी तो और लेफ्ट मे देखिए कुछ टोल रखा हुआ है| बैकराउन्ड की व्हाइट दीवार पे कुछ लिखा हुआ होगा और कुछ तैयारियां हो रही है और उस --

और ये पार्टी हो रही है| पीछे डी_जे में कुछ तीन बंदे खड़े है जो बॉक्स बजा रहे है।

सामने एक बस खड़ी हुई है और यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा है और सामने एक ए आदमी खड़ा है।

और उन बोटलो में एक पिंक कलर है और एक ब्लू कलर एक व्हाइट कलर है और साथ में नीचे भी देखिये और उधर भी सब स्टैंप रखे हुए --

बहुत सारे बच्चे लाइन लगा के बैठे हुए हैं। एक गली जैसी है लेफ्ट वॉल की दीवाल पे जालीया लगी ह बहुत सारी और राइट में एक दरवाज़ा है।

राइट साइड़ पे एक आदमी खड़ा है और लेफ्ट साइड़ पे एक आदमी खड़ा है और ये एक रिक्शा के दोनों साइड खड़े है| रिक्शे का कलर ग्रीन है।

ये एक जू है पार्क ओर इसमे एक मगरमछ बैठा हुआ है ओर सामने पानी का छोटा सा तालाब है।

और और फुटबॉल और बॉल मिलती है और यहाँ पे मतलब फोटोकॉपी भी होती है सामने बोर्ड लगा हुआ है सामने तीन बन्दे एक बच्चा खड़ा हेगा।

ये एक ऑफिस है और यहाँ पे एक आदमी बैठा है और उसके सामने बोहोत सारे लोग आ के खड़े होके कुछ बाते कर रहे है और पीछे फैन लगा हुआ है।

हैं और राइट साइड में हाथ धोने की बेसिन लगी हुई है| उसके सामने एक टेबल रखी है पांच रेड चेयर रखी है पिंक कलर की बोतल रखी है और लेफ--